आसमान भी नजर आ रहा है आसमान साफ है और एक पक्षी भी नजर आ रहा है जो उड़ रहा है।

टेबल की दूसरी तरफ से अ चिप्स के पैकेट्स चाबियां भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में कुछ लोग है जो शायद कोई त्यौहार मना रहे हैं।

इस तस्वीर में एक इमारत है जो पुराने जमाने की लग रही है।

इस तस्वीर में एक आंगन है आंगन में बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

साइड में कुछ और झूले भी है और कुछ लोग भी है पीछे एक इमारत है और बोहोत सारे पेड़ भी है।

साइड में एक पार्क भी है जहां पर कुछ लोग चल रहे हैं और इस बाग के अंदर बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं।

बहोत सारी गुड़ियाएं रखी हुई हैं आधी गुड़िया बड़ी है आधी छोटी है।

एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है जिसके बाल खुले हुए हैं और जो अपनी तस्वीर ले रही है।